यह एक काफी बड़ा फेक्ट्री है इस फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते है।

आंध्रा बैंक का ऐ टी एम् है और बगल में ही एक्सिस बैंक का ऐ टी एम् है और बहुत सारे लोग भी है लोग यहाँ पर आते जाते रहते होंगे।

तस्वीर वायरल की गई है और यहाँ पर--

बहुत कोई डांस करने आते रहता हैं।